यहाँ पर बहुत सारे हिरन और हिरन के बच्चे और एक सुखी टहनी भी दिख रही है और मैदान है।

ये एक नदी का पुल है। इस पुल के चार बड़े बड़े पिलर नजर आ रहे हैं।

पेड़ और हरी भरी घास लगी हुई है।